इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक चर्च ।

दिखाई दे रहा है इस सिक्स लाइन रोड के थोड़ा सा आगे--

इस बिल्डिंग के बाहर गेट पर लिखा है।

यहां दिख रहा है एक स्टेशन इस स्टेशन के ऊपर एक --

राधा और कृष्ण की इस मूर्ति में उनके हाथों में बांसुरी भी दिखाई--

अपने पीठ पर बैग टांगे बस पर चढ़ रहा है।

का है इस शोरूम में बहोत सारी हैंडबैग्स और सूटकेस की वैरायटी है।

इस चित्र में दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक टेबल पर रखी हुई ट्रे दिखाई दे रही--

उसके दोनों गेट खुले हुए हैं और पीछे की डिग्गी भी खुली हुई है।

एक बड़ा वार्डरोब दिखाई दे रहा है इस वॉर्डरोब का कलर --

इस मंदिर के बाहर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस टोल प्लाजा पर कारों की लाइन लगी हुई--

इस चित्र में दिखाई दे रही है।

इस नदी के किनारे हरी भरी घास दिखाई--

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के बाहर तिरंगा झंडा लहरा रहा--

इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं स्टील के ग्लास ।

सबसे ऊपर वाली रो में दो गिलास हैं उसके नीचे तीन--

इस दुकान को लाल और सफेद कलर के गुब्बारों से सजाया हुआ है।